इसमें कुछ चैयरे दिखाई दे रही हैं| यहाँ पर एक पर्दा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ भी नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ ईंटे पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी व लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ छोटी हरी-हरी घास भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी नजर आ रहे हैं और कुछ प बड़े-बड़े पेड़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही हैं।

इस अ शोरूम में कुछ लाइट्स लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक ग्रीन कलर का डोर मेट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक रिकशा भी दिखाई दे रहा है रोड पर --

अ एक स्कुल की रुम की है जहाँ पर बहुत सारी बेंचेज रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक क्लॉक लगी हुई दिखाई दे रही है।

पिक्चर में एक बड़ा-सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ चेयरे रखी हुई दिखाई दे रही हैं| यहां पर कुछ लोग भी--

यहाँ पे बहुत सारी बाइके खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है इस इमेज में एक तबला रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ फ्लावर पॉट भी यहां पर नजर आ रहे हैं यहां पर एक लाइट का बोर्ड भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है| यहां पर कुछ ब अ रेलिंगो पर कपड़े भी सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं| इस इमेज में एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर पीछे की तरफ बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर नीला-नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है।